और यहाँ पर कुछ फ्लैग लगे इंडियन नेशनल फ्लैग लगे हैं एक बड़ी सी वॉच लगी हुई है।

यहाँ पर एक स्कूल है और स्कूल बना हुआ है और स्कूल के यहाँ बीच में एक--

चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं कुछ यहाँ पर मखाने के पैकेट रखे है।

कुछ यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर कुछ बाइक वगैरह स्कूटी खड़ी हुई है यहाँ पर अ बाइक खड़ी है।

कियाा हुआ है कुछ डिजाइन की हुई है बिल्डिंग की दीवारों पर और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है अभी यहाँ पर बाउंड्री बना रही है।

और लगे हुए हैं एंगल पर और कुछ यहाँ पर जींस रखे हुए--

और दूसरा मिशीन को चला रहै हैं एक बड़ा सा कंटेनर रखा।

और यहाँ पर शरारा गरारा सलवार सूट पहने हुए हैं।

और दुकानों पर कुछ पानी वगैरह पॉलिथीन के अअअ कवर किया हुआ है और कुछ लोग--

और यहाँ पर एक फेन लगा हुआ है अ और कुछ लाईट्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं।

की ये डिजाइन अ अ यहाँ पर स्टाइल के बैनर लगा हुआ है।

और लोहे की अ चद्दर का सेट बना हुआ है और सीट का सेट बना हुआ है।

और नाइट का टाइम है और लाइटिंग की हुई है होटल पर पूरी लाइट जल रही है लाइट सीधी जल रही है वहाँ पर --

और बल्ब लगे हुए हैं बहुत सारे और यहाँ पर कुछ बाइक वगैरह खड़ी हुई है ब गाड़ियां खड़ी हुई है।

और यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है कुछ बलून लगे --

कुछ उस साइड पेड़ लगे हुए हैं नदी के उस साइड पेड़ लगे हुए हैं कुछ पहाड़--

यहाँ पर एक खेत है और जिसमें कुछ यहाँ पर कीयारी टाइप की बनी हुई है पौधे लगे हुए हैं।